देखने में लग रहा की गजरेस है गाड़ी-उड़ी बनाने वाला आगे में है करकट के गेट है लागल है बहुत ही वो बरा बरी भी देखने में वो लग रहा मेरा --

पार्क मेला लग रहा है घूमे वाला पार्क उरक है बहुत पेर है प्या बोझा रहा है मेला देखने में पूरा लड़की-उड़की पार्क है घूमने वाला --